एक बहुत बड़ा घर है घर के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े कांच हैं एन्ड दो तल्ला माकन है राइट साइड की और एक ब्लब निकला हुआ है खिड़की के पास।

ये एक पहाड़ी इलाका है जिसमे बहौत बड़े-बड़े पहाड़ आगे की और --

पेड़ हैं बड़े-बड़े इंसानो तीन बच्चे जा रहे हैं जो गंजी पहने हुए रेड ब्लैक एंड येलो में तीन छोटे-छोटे बच्चे जा रहे हैं एक और बच्ची --

इधर दिख रही है ब्लैक कलर के एक लड़की हाथ में बैग लिए हुए कन्धा में बैग टांगा है रेड कलर की खड़ी है ब्लू कलर का पेहना --

बहुत सारी चिमकी में सब्जी रखी हुई है करेला है शिमला मिर्च है आलू है बोरा में आलू रखा हुआ है।

बॉर्डर खम्बे रखे हुए लगे हुए हैं और बिल्डिंग के ऊपर राईट साइड के ऊपर दो टंकी है पानी की और बहौत सारी खिड़कियाँ हैं।

एक वो दो तला घर है जो सामने लेफ्ट साइड पर एक कार खड़ी है ब्लैक कलर के एंड उनके सामने एक बड़ा सा पेड़ है।

यहाँ तीन औरत जो डांस कर रही हैं हाथ को फैलाये हुए।